यह एक सेलून है। यहां पे दो लोग बाल कटवा रहे हैं। यहाँ पे बोहत सारे क्रीम रखीं हुईं हैं। सारे प्रोडक्ट --

तीन लोग काम कर रहे हैं | लकड़ियाँ भी दिख रही है बहोत सारी मिट्टी भी दिख रही है और पिलर पर दिख रहा हैं | यहाँ पे बहुत सारे घर भी दिख रहे है लोहे की छड़ दिख रही है।

फोन दिख रहा है | वाइट कलर से पेंट किया हुआ है। एक गेट दिख --

यह एक एयरपोर्ट है। यहां पे एक प्लेन दिख रही है व्हाइट कलर की। प्लेन के पास बहोत से लोग खड़े हुये हैं और यहां पे पेड़ भी बहोत सारे दिख रहे हैं।

यहाँ पर पेड़ दिख रहा हैं यहाँ पर पिंक और रेड कलर के परदे लगे हुए हैं लाइट भी बोहोत ही ब्यूटीफुल लगी हुई है बोहोत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है।

यहाँ पे टेंट लगा हुआ है कुछ कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ा-सा पेड़ दिख रहा है। लोहे के खम्बे दिख रहे हैं। लोहे की सीढ़ी दिख रही है। बोहोत से लोग खड़े हुए हैं।

लोहे की स्टील कि की कुर्सियां रखी हुई हैं। बोहुत बड़ी हॉस्पिटल दिख रही है। बोहुत सारी खिड़कियां लगी हुइ हैं। ब्लू कलर कि डस्टबिन रखी हुई है। कांच लगे हुए हैं।